downloading gis datasets पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगेः
gis के बारे में
natural earth data वेबसाइट से vector dataset डाउनलोड़ करना
qgis में vector data देखना
bhuvan वेबसाइट से raster dataset डाउनलोड़ करना और
qgis में raster data देखना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu linux os वर्जन 1604
qgis वर्जन 218
mozilla firefox ब्राउज़र वर्जन 540 और
एक कार्यरत इंटरनेट कनेक्शन
इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए gis के बारे में ज्ञान वांछित है लेकिन अनिवार्य नहीं
gis के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्न लिंक पर जाएं
इस ट्यूटोरियल के लिए आवश्यक सभी datasets code files लिंक में उपलब्ध हैं
gis के बारे में
यह geospatial data को कैप्चर करने भंडारण करने जाँच करने विश्लेषण करने और प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है
spatial data दो प्रकार का होता है vector data और raster data
अब इंटरनेट से vector dataset डाउनलोड़ करें
किसी भी वेब ब्राउज़र को खोलें
address bar में टाइप करें wwwnaturalearthdatacom एंटर दबाएं
natural earth data वेबसाइट खुलती है
downloads लिंक पर क्लिक करें
downloads पेज खुलता है पेज को नीचे स्क्रोल करें
आप dataset के तीन भिन्न scales देख सकते हैं large medium और small
प्रदर्शन के लिए dataset डाउनलोड़ करें
large scale data में cultural बटन पर क्लिक करें
एक वेबपेज खुलता है
यहां हम विभिन्न उपलब्ध datasets देख सकते हैं
अब country administration boundary फाइल्स को डाउनलोड़ करें
हैडिंग admin zero hyphen countries में download countries बटन पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जो आपको फाइल को सेव करने के लिए प्रेरित करता है save file ऑप्शन चुनें
ok बटन पर क्लिक करें
डाउनलोड़ की प्रक्रिया शुरू हो गई है
मेरे सिस्टम पर zip file downloads फोल्डर में डाउनलोड़ हो गई है
zip file के कंटेंट को एक्स्ट्रैक्ट करें राइटक्लिक करें और extract here ऑप्शन चुनें
एक्स्ट्रैक्ट किए गए फोल्डर पर डबलक्लिक करें
यहां हम भिन्न फाइल एक्स्टेंशन के साथ कई फाइल्स देखते हैं
यह dataset का vector type है
vector data के बार में
असतत विशेषताएं जैसे कुएं सड़क और उपयोगी भूमि का प्रकार vector data है
vector data प्वाइंट लाइन या पॉलीगन फॉर्मेट का हो सकता है
qgis खोलें और एक डाउनलोड़ की गई फाइल देखें
यहां मैंने पहले से ही qgis इंटरफेस खोला है
menu bar में layer menu पर क्लिक करें
menu ऑप्शन से add layer चुनें
submenu से add vector layer ऑप्शन पर क्लिक करें
add vector layer डायलॉग बॉक्स खुलता है
source type में file encoding में system चुनें
source हैडिंग में browse बटन पर क्लिक करें
natural earth data वेबसाइट से डाउनलोड़ किए गए admin countries फोल्डर पर जाएं
फोल्डर के कंटेंट से shp एक्स्टेंशन के साथ फाइल चुनें
add vector layer डायलॉग बॉक्स में open बटन पर क्लिक करें canvas पर विश्व का मानचित्र खुलता है
मानचित्र को सेव करें
menu bar में project पर क्लिक करें
नीचे स्क्रोल करें save बटन पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स में फाइल को map hyphen 1 नाम दें
मैं इसे desktop पर सेव करूँगा
save बटन पर क्लिक करें
मानचित्र desktop पर map hyphen 1 dot qgs के रूप में सेव हो जाएगा
raster data के बारे में
अवलोकनों के मध्य स्थानिक रूप से मौजूद सतत विशेषताएं raster data है
raster data रोज़ और कॉलम्स फॉर्मेट में सेल्स का बना होता है
अब bhuvan वेबसाइट से raster dataset डाउनलोड़ करें
bhuvan platform isro द्वारा बनाया गया था
यह वेबसाइट भारतीय रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट द्वारा संग्रहीत विभिन्न डेटा को होस्ट करती है
bhuvan वेबसाइट से raster dataset डाउनलोड़ करने के लिए लिंक यहां है
किसी भी वेब ब्राउज़र में bhuvan वेबसाइट का लिंक खोलें
open data archive पेज खुलता है
select category के नीचे बाएं पैनल पर satellite/sensor ऑप्शन चुनें
select subcategory ड्रापडाउन में resourcesat1: lissiii ऑप्शन चुनें
नीचे स्क्रोल करें select area में bounding box चुनें
यहां हमें लोकेशन का लेटिट्यूड और लोंगिट्यूड प्रविष्ट करना होगा
mumbai क्षेत्र के लिए data डाउनलोड़ करें
विशिष्ट क्षेत्र के लेटिट्यूड और लोंगिट्यूड को खोजने के लिए google maps का उपयोग करें
mumbai क्षेत्र के लिए निम्न data प्रविष्ट करें
minimum longitude 7275
maximum longitude 73
minimum latitude 19
maximum latitude 1925
select बटन पर क्लिक करें
mumbai के ऊपर tile चिन्हांकित होगा
पेज के निचले भाग पर next बटन पर क्लिक करें उपलब्ध tiles की सूची खुलती है
date of pass column में देखकर सबसे हाल का चित्र चुनें
24 december 15 उपलब्ध datasets में सबसे नवीन है
selection for backlog में इस रो पर चेक बॉक्स पर क्लिक करें इस रो पर download बटन पर क्लिक करें
bhuvan आपको लॉगिन करने के लिए प्रेरित करेगा ok बटन पर क्लिक करें
एक dialog box खुलता है
यदि आप पहली बार bhuvan का उपयोग कर रहे हैं तो नया account बनाने के लिए पेज के निचले भाग पर new user लिंक पर क्लिक करें
account and profile information पेज खुलता है
दिखाई गए अनुसार उपयुक्त विवरण भरें submit बटन पर क्लिक करें
आप login id और password के साथ bhuvan टीम की ओर से एक ईमेल प्राप्त करेंगे
मैंने पंजीकरण प्रक्रिया पहले ही पूर्ण की है अतः मैं click here to login लिंक पर क्लिक करूँगी
मैं username और password प्रविष्ट करूँगी और login बटन पर क्लिक करूँगी
फिर से 24dec15 row के लिए tiles panel में download बटन पर क्लिक करें
zip file डाउनलोड़ होनी शुरू होती है
एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जो आपको फाइल को सेव करने के लिए प्रेरित करता है
save file ऑप्शन चुनें और ok बटन पर क्लिक करें
zip file downloads फोल्डर में सेव होगी
zip file के कंटेंट को एक्स्ट्रैक्ट करें
एक्स्ट्रैक्ट किए गए फोल्डर पर डबलक्लिक करें
इस फोल्डर में mumbai क्षेत्र के लिए raster dataset है
अब फाइल को qgis में खोलें नई विंडो खोलें
tool bar के ऊपरी बाएं कोने में new icon पर क्लिक करें
menu bar में layer पर क्लिक करें
menu ऑप्शन से add layer चुनें
submenu से add raster layer option पर क्लिक करें
एक dialog box खुलता है
हमारे द्वारा bhuvan वेबसाइट से डाउनलोड़ किए गए फोल्डर पर जाएं
24december15 hyphen band2 dot tif चुनें open बटन पर क्लिक करें
qgis canvas पर आप mumbai क्षेत्र का raster मानचित्र देखेंगे
संक्षेप में
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा gis के बारे में
natural earth data वेबसाइट से vector data डाउनलोड़ किया
qgis में vector dataset देखा
bhuvan वेबसाइट से raster data डाउनलोड़ किया
qgis में raster dataset देखा
नियतकार्य के लिए
gis data डाउनलोड़ करने के लिए अन्य प्रसिद्ध वेबसाइट openstreetmap data वेबसाइट है
openstreetmap data वेबसाइट को समन्वेषण करें
निम्न लिंक पर मौजूद विडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
यदि इस स्पोकन ट्यूटोरियल से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया इस साइट पर जाएं
वह मिनट और सेकेंड चुनें जहां आप प्रश्न पूछना चाहते हैं संक्षिप्त में अपना प्रश्न बताएं
हमारी टीम से कोई उनका उत्तर देगा
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद